और एक बहोत बड़ी नदी भी है।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

और एक ए_सी भी लगा हुआ है।

और उस दुकान में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक दुकान का फोटो है।

और बहुत सारे ईंटों के मकान भी बने हुए है।

और बहोत सारी मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं।

और एक सफेद और नीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा मकान--

और उस मेले में बहुत सारे व्यक्ति भी है।

यह फोटो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का है।

और बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

और व्यक्ति भी हैं एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

इस फोटो में बहुत बड़ा मकान है।

और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।